यव वाराणसी के पतंजल योग योग विज्ञान संस्था है।

यह वाराणसी के गंगा नदी की है। गंगा नदी के मडगंगा घाट की है। यहाँ पर चिताएं जलाई जा रही है साथ में ढेर सारे लोग हैं।

जहाँ पर मन मंदिर बना हुआ है ऊपर साथ में नीचे घाट है कुछ लोग हैं घाट पर ये जगह बहोत ही अच्छी जगह है।

पीले कलर की चार‌ पाँच तल्ले की बिल्डिंग है। बहोत ही अच्छी लग रही --